ये एक रूम है और इस रूम के अंदर एक दो दीवार पर--

ये एक रूम है रूम के अंदर तीन दीवार है।

अर ऊपर सीलिंग फैन जुला हुआ है और लाइट बिल जल रही है।

कल गगन का कलर ब्लू है और ये ये एक बड़ा सा जवाहर मीनार है।

यहां पे दो ठो बस खड़े हुए हैं और उसके अंदर एक तो--

जेंट्स है और साइड में पेड़ है और पर्वत का रंग ब्लैक स्काई है।

ये एक सिनेमा टॉकीज अ सिनेमा हॉल लग रही है जहां स पे बहोत सारे लग लोग खड़े हुए ह ।

आ बहोत सारे टी शर्ट है और ये एक अम स्पोर्ट्स का दुकान है।

और तार गया हुआ है और ये हनुमान जीकि मंदिर बहोत ही खूबसूरत है।

और यहां पे एक ठो फ्रीजर है और बाहर एक ठो ऑटो खड़ी हुई है और अंदर कार्टून बॉक्स है।

और एक आदमी बैठा हुआ है और ऊपर अलवेस्टर लगा हुआ है और बहुत सारे तार लगे हुए है।

इसमें मोबाइल नंबर भी दो ठे दिया गया है इसमें मा--

और बहोत सारे पेड़ हैं पेड़ के पत्तर का रंग ग्रीन कलर का है और नीचे अं पानी है पानी का रंग --

यहां पर तीन टू ए_सी लगी हुई है और बाहर एक टू बाइक है और एक टू स्कूटी है और साइड में एक--

रेड कलर का है और एक पर्पल कलर का है डस्टबिन है सायद --

और बीच में एक ठो दरवाजा है दरवाजा खुला है बहुत सारे खिड़की हैं यहां पर।

चारों तरफ ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है औरते सब रंगीन--